घर है जो कि नए नए बनाए गए आगे एक पाइप बनाया गया जो सफेद कलर का है।

इसमें बहोत सारे बच्चे एवं बच्चा खेल रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म पेहनी हुई है।

यहां पर दरवाजा और खिड़कीया लगी गई है खिड़कियों के अलग अलग तरह के कलर किये हुए हैं।